यहां पर फर्नीचर चॉकलेट रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बच्ची खड़ी है इसने लाल फ्रॉक पहनी है।

सामने दी गई फोटो में एक कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कुर्सी रखी हुई है पीछे दीवार पर एक पंख लगा हुआ है।

दुकान में कई चिप्स के पैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हवाई जहाज के ऊपरी हिस्से कि टेल लाल रंग कि है।

पीछे बैठे हुए लोगों के सिर पर पीले रंग की टोपी लगी हुई हैं इन्हें हेलमेट कहते हैं।

पीछे एक प्लेट दिखाई दे रही है प्लेट में कई रोटियां रखी हुई है।

यहां पर एक फ्रिज रखा दिखाई दे रहा है दीवार में पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर दो व्यक्ति स्विमिंग पुल में तैर रहे हैं।